पीछे में बहुत सारा पेड़ देख रहा है।

अंदर में बहुत सारा लोग दिख रहा है।

वो लोग डांस करने के लिए कारपेट ग्रीन कलर के बिछा के देख रहा है।

यहा मे देक रहा है पिंक कलर का।

बाहर में रेड कलर का लंबा से बिछा के भी देख रहा है।

टेबल भी दिख रहा है और टेबल के ऊपर में कुछ मोबाइल जैसा भी दिख रहा है।

बैलून भी अलग अलग कलर का देक रहा है और डिस्को लाईट भी देक रहा है।

और लाइट भी दिख रहा है।

टेबल भी दिख रहा है ब्लू कलर का।

वेटर लोग भी टंना के डेख रहा है।

इंसान भी चेयर में बैठे हुए दिख रहा है वो कुछ लिख रहा है।

वो लोग अलग अलग ड्रेसेस पहन के दिख रहा है।

लाइट भी अलग अलग कलर पे जल के दिक रहा है।

तार भी दिखाई दे रहा है।

केक अलग अलग कलर का दिख रहा है।

बेंच भी दिख रहा है।

यह एक दुकान है जिसमें बच्चा लोग का खिलौना अलग-अलग कलर का दिख रहा है।

और छोटा छोटा पेड़ लोग पे बहुत ज्यादा देख रहा है।

घर को व्हाइट येलो ब्लू ऑरेंज लगा के दिखाई दे रहा है।

काला कलर व्हाइट करके लगा के है।

में बटन घुसा के और आदमी भी दिख रहा है।

पेर पौधा लोग भी देख रहा है और टीना घर भी दिखाई दे रहा है।

और गमला का ऊपर में मिर्चा भी दिख रहा है।

ये घर का अंदर में बहुत ज्यादा सामान लोग को दिखाई दे रहा है।

घर को ब्लू और व्हाइट लगा के दिख रहा है।

हमें बहोत ज्यादा इंसानों को देख रहा है।

टेबुल भी दिख रहा है टेबल के ऊपर मोबाइल कॉपी और गिफ्ट शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है।

इंसान लोग बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है।

फादर को भी देख रहा है।

लड़की भी दिखाई दे रहा है।

बाहर में लाइन से बाइक और स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

ये एक ऑफिस है जिसमे खिड़की और दरवाजा लोग भी दिखाई दे रहा है।